यहां एक कॉलेज दिखाई दे रही है।

यहाँ कुछ लड़के भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक बैंक का ए.टी.एम. है।

खिड़कियों का कलर कत्था है |

रेड कलर की है कुछ स्कूटी सफ़ेद --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

ये बिल्डिंग में दीवाल का रंग स --

प्रतिबिम्ब में दो कुर्सियां दिखाई दे रहीं हैं।

एक टीचर भी खड़ी हुई हैं |

जिस पे चार से पाँच बन्दर बैठे हुए हैं।

और सारे बंदर इधर-उधर देख रहे हैं।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक बल्ब सफेद कलर का जल रहा है पीछे।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

इसका बोनट ऊपर है।

अ हाथी के ऊपर कुछ --